सामने एक बिल्डिंग दिख रही है जो सफेद कलर की है जिसमें नीचे--

और सामने एक कुत्ता बैठा हुआ है दोनों साइड हरी घांस लगी हुई है ऊपर सफेद आसमान दिख रहा--

पोस्टर लगा है जिस पे कुछ लड़के लड़कियां और एक साइड बच्चे--

दिख रहे हैं पीछे एक बड़ी बिल्डिंग है जो पीले कलर की लाइट लगी हुई है और ऊपर एक बड़ा--

लगा हुआ है और इन में सुपर बाजार ट्वींस वाहिनी लिखा हुआ है और इसमें दो साल का--

स्माइली वाले बहुत से गोल पोस्टर लगे हुए हैं और ऊपर दो--

कुर्सियां हैं एक खंबा दिख रहा है जो सफेद एक साइड लाल कलर का है और कांच के खिड़कियां--

सामने बहोत सारी दूर दूर छोटी छोटी बिल्डिंगे दिखाई दे रही है जिनमें रंगीन लाइट --

दिख रही हैं कोई पीली कोई सफेद दिख रही है और बहुत सारे हरे--

और नीला आसमान दिख रहा है साइड में कुछ रेलिंग दिख रही हैं जिसकी यहां कुछ आदमी--

दिख रहे हैं सामने कुछ पेड़ हैं नीचे बहुत सारा पानी है जो पीले कलर का--

रखे हुए हैं और बीच में एक मंदिर बना है जिसमें अंदर एक गणेश जी की मूर्ति--

दिख रही है और ऊपर पीछे दीवार ऊपर पीले कलर की है ऊपर छत सफेद कलर की है जिसमें लाइट और एक --

बड़े हैं ऊपर सफेद आसमान दिख रहा है।

लगे हुए हैं पीछे एक सफेद घर बना हुआ है और बहुत से--

पेड़ दिखाई दे रहे हैं ऊपर नीला सफेद आसमान दिख रहा है सामने एक बड़ा--